फ़्रिज व्रिज का है लगता है और येएएएएए ये एक बाइक है दो स्कूटी है एक ऑटो है बहोओत सुन्दर।

के जाता और यहाँ पर बहोत मंदिर अच्छा सुंदर दिख रहा है मंदिर के ऊपर तो नहीं चढ़ते हैं क्या नहीं चढ़ता मैं भी।

यहाँ पर पुस्तक का बिक्री होता है और यह मनुष्य बहोत अच्छा पूजा करते हुए वह बहोत सुंद--

और यहा पर चार पांच कार है हरी भरी चीजे है। क्या और तार वार लमो ।

बहोत सुन्दर झूला वूला लगा है पेड़ है ऊंचा से ऊंचा और गंगा तन मन चंदन लिखाए हबे।